जिसके राईट साइड बहुत सरे पेड़ लगे हुए है स्टेडियम में ग्रीन कलर की घास बिच्छी हुए है कुछ लाइट के खंभे लगे हुए है और लड़के यहां पर खेलते हुए दिख रहे हैं।

यहा पर मुझे एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो एक ऑफिस के अंदर की है यहा पर खिड़की लगी हुई है जो की कांच की है और एक एग्जॉस्ट फेन लगा हुआ है।

यहां मेरे सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो की एक फलो की दुकान की है यहां पर एक ठेले पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के और ताजे फल रखे हुए हैं जैसे की ऐपल ।

मेरे सामने एक इमेज दिखाई दे रही है जो इमेज काफी ज्यादा हरी भरी है क्यों की ये पेड़ो से भरी हुए है ये एक नर्सरी की--

मंदिर के पीछे लोगो के घर है और मंदिर के आगे बहुत सुन्दर तरीके से लाईट लागाई हुई है और यहाँ पे लोग--

और बहुत सारे अलग अलग बोडिंग भी लगे हुए हैं जिम के अंदर यहां पे लड़के लोग एक्चेर साईज करते हुए दिख रहे हैं।